ये एक ब्लू कलर का ट्रैक्टर है जिसमें पीछे प्लाव लगा हुआ है उसके सामने एक पेड़ खड़ी है जो बहुत हरी-भरी सी है।

मौसम बहोत सुहाना है और ट्राइरेक्टर में एक चक्का छोटा है एक पिछला वाला बहोत बड़ा है और ड्राइवर कोई भी बैठा हुआ नहीं है ट्रैक्टर पे।

और दो अपना पोज दे रहे हैं बेहतरीन ढंग से और पीछे जिम में पोस्टर लगा हुआ है जिसमें बॉडी बिल्डिंग --

इस पिक में रात का समय है एक लड़का ब्लू कलर के कुर्ते में खड़ा है जींस पहने हुए।

यह फोटो एक तीन दो मंजिला इमारत की है जिसमें तीन ए-सी लगे हुए हैं।

और नीचे में एक्सिस बैंक का एक ए-टी-एम है।

यह दृश्य किसी सीज़ुकी कंपनी का --

और बाकी -- वाइट कलर के भी कार यहां खड़ी हैं।

और कुछ कस्टमर्स लाइन में खड़े हैं पेट्रोल को लेने के लिए बाहर में लंबी सी बोर्ड लगी है इंडियन ऑयल की।

ये पिक्चर किसी भीड़बार वाले इलाके का है।

और एक -- ऑटो खड़ी है जिसके सामने एक स्कूटी पे एक येलो कलर के --

रूम ओपन है ब्राउन डेस्क है ग्लासी --

एप्पल बनाना ब्लैकबेरी कीवी जैसे फल को रखे हुए हैं सेल करने के लिए।

फ्रंट में एक वाइट बोर्ड --

यह दृश्य एक चर्च की हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर में एक क्रॉस का साइन है।

या दृष्टि से किसी माउंटेनियस प्लेस की है।

गुंबजनुमा इमारत है जिसके नीचे भी लोग खड़े हैं।

पेन खरीदने के लिए गए हुए हैं।

और कस्टमर्स बहुत सारे पेन को चेक कर रहे हैं खरीदने के लिए।

सामने में एक डीजल जनरेटर है.

ऑफिस के बाहर जो होती है पोस्ट बैंक वो है।

यह पिक्चर किसी मुस्लिम के धार्मिक प्लेस जिसे हम लोग --

और यह ग्रीन कलर की गेट्स हैं ग्रीन गुंबज है मिरर्स लगे हुए हैं।

कुछ मिस्त्री खड़े हैं काम कर रहे हैं।

टाइल्स लगे हुए हैं और सामने में दो स्पीकर है।

और पूरा बिल्डिंग काफी बेहद खूबसूरत लग रहे हैं।

जिसमें सामने बहुत सारे दंबल्स लगे हैं।

और कुछ टमाटर ग्रीन है और कुछ येलो ।

और लाल गमले में बहुत सारे पेड़ों --

इस पिक्चर में कुछ फैमिलीज एक छोटे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसका उम्र एक साल है।

एक केफसी का भी बोर्ड लगा हुआ है।

और यहां पे आगे में दो स्कूटी --

खड़े होकर अपनी गुरु की बात मान रहे हैं।

सामने में बहुत सारी सीढ़ियां हैं।

यह एक मस्जिद का अंदर का फोटो है।

बोर्ड स्मार्ट बोर्ड के तहत पढ़ा रहे हैं।

जिसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े सजे हुए हैं।

या एक एचडीएफसी का ब्रांच है।

और गेट के बगल में एक वेटिंग सोफा भी लगा हुआ है।

और एक बगल में ग्रीन पेड़ लगे हुए हैं।

एक महिला अपने बच्चे को घुमा रही है।

यह किसी रेस्टोरेंट का फोटो हो सकता है या फिर --

और तीन ब्राउन कलर के सोफा लगा हुआ है।

किसी सार्वजनिक स्थान का फोटो है।

जिसमें कुछ बच्चे डांसिंग परफॉर्म कर रहे है।

और यह ब्लैक फिनिश की साथ की गई है।

यह एक पच्छी का पिक्चर है।

इस फोटो में एक चिकित्साले --

या पिक्चर एक फिटनेस स्टूडियो --

जिसमें दो बच्चे अपने शिक्षक टीचर से--

जिसमें एक गाड़ी की कांच --

फूट जाने के कारण या सर्विस सेंटर पे आई हुई है।

और यह एक बड़े से ब्लू कलर की गेट से बनी है।

यह एक रिसेप्शनिस्ट एरिया है।

यह पिक्चर एक जीम की है।

ये पिक्चर एक शिप की है।

इस पिक्चर में बहुत सारे मछुआड़े--